इसके आगे एक पेड़ भी है और आगे रास्ता जाता है और आगे भी बिल्डिंग बनी हुई है इसके।

देखिए इधर मे एक गाड़ी है और दो-तीन आदमी इस पर ग्रेनाइट का सा पीस ले जा रहे हैं।

और इधर में एक मलिक सा --

देखो यह कछुआ नजर आ रहा है और यह सो --